कुछ गाड़ी खड़ी हुई है डॉक्टर एलर्जी ली एलर्जी वाला डॉक्टर का पोस्टर लगा हुआ है।

यहां पर एक रूम है और क्लास का रूम है। ट्यूशन जिसपे लिखा हुआ है क्लासेस लर्न डू लाइव वॉक इंटू योर फ्यूचर ।

कुछ अ आदमी खड़े हुए हैं कुछ पीछे दुकाने हैं कुछ छतरी है पेड़ पौधे हैं।

यहां पर एक पेट्रोल पंप है जिसके ऊपर लिखा हुआ हैं एच_पी ।

यहां पर डीजल लिखा हुआ है पेट्रोल लिखा हुआ है एक ट्रक जा रहा है दो तीन आदमी खड़े हुए हैं।

पीछे पेड़ पौधे दिख रहे हैं फूलों से सजाया गया है लाल पड़े हैं फूल हैं।

एक बाइक खड़ी हुई है सुपर स्प्लेंडर ।

तेल कुछ सीसी रखी हुई है कुछ डिब्बे रखे हुए हैं हॉर्लिक्स हैं। ऊपर डैंपर रखे हुए हैं।

यहां पर एक रेस्टोरेंट है जिसमें कुछ कुर्सी पड़ी हुई है दो तीन टेबल है कप हैं पीछे लाइट जल रही है।

स्कूटर है एक वाटर बोतल रखी हुई है मगे है।

कुछ गिलास हैं प्लेट में खाना रखा हुआ है व्हाईट कलर की खाना है।

नीचे बड़े बड़े पेड़ हैं साइड में छोटे छोटे पेडे हैं।

एक लाल गाड़ी है नीचे कुछ ऐ_सी लगी है।

बराबर में कुछ घास फूस हैं।

पीछे दो लड़के बैठे हुए हैं बल्ब जल रहा है।

ग्राउंड है ग्राउंड में कुछ हिरण है।

बारहसिंगा जालियों में कैद कर रखे हैं चारों तरफ--

साइड में पेड़ लगे हुए है।

एक फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है।

इसमें पलाई से अलमारी बनाई जा रही है एक गेट है।

एक चेयर दिख रही है एक लाइट जल रही है।

यहां पर एक रूम है।

तीन चार टेबल है टेबल का रंग रेड व्हाइट ब्लैक है।

साइड में एक रोड दिख रही है।

साइड में एक बड़ा पेड़ है।

पंखा सा है सफेद कलर का कुछ बच्चे हैं कुछ जेंट हैं एक लड़का फोन से वीडियो बना--

यहां पर एक बाथरूम है बाथरूम में कुछ सीढ़ी लगी हुई है।

पीछे कुछ कटोरी रखी हुई है। एक लाल शटर है। नीचे एक घास का मैट बिछा हुआ है। पीछे एक है।

यहां पर बहोत सारे पंखे है।

लैंप है पिंक कलर का ब्लू कलर का।

उसके गले में पढ़ना है।

यहां पर एक हॉल है जिसमें बैठक सी हो रही है।

उसके ऊपर एक थाली रखी हुई है जिसमें कुछ स्ट्रॉबेरी है कुछ छोटी छोटी पत्तियां हैं डंडी है।

सैलून का टेबल रखा हुआ है जिसपे सैलून लिखा हुआ है कुछ सोफे पड़े हुए हैं पीछे कुछ बोतल वगैरा रखी हुई हैं।